प्लेस में एक बड़ी मशीन का--

बहुत सारे लीची रखी हुई है लीची बहुत ही टेस्टी होता है इसमें पत्ते भी लगे हुए --

लीची रेड कलर का गोल गोल है।

बाहर भी बाइक खड़ी है यह देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है चारों तरफ रोशनी है।

मै देख पा रही हूं यहाँ एक बड़ा--

यहां इकट्ठे हुए आते जाते नजर आ--